फुंडे अर उंडे हम तें कई सारा बड़ा बड़ा माकन दिखेण लग्यां दुई दुई तीन तीन मंजिल का नीला अर सफेद रंगा का उंका सामणी पर हम तें काला बुर्ता दिखेणा।

ये चित्र मा जी हम देख सकदों की हम तें यखम एक खूब बड़ु होटल दिखेण लग्युं जै का भैर हम तें शीशा शीशान दिखेणा कुई --

ये चित्र मा जी हम देख सकदो की हमथे यखम एक काला रंगु को बडू बोर्ड दिखेण लग्युं जैफर सफ़ेद रंगा मा लिख्युं होटल अनंता इन वेका एैंच --

नीसाण हम तें लाल रंगो कु डब्बा दिखेण लग्युं फणी जे पर इंडियन पोस्ट लिख्युं नीसाण फर्स जै मा जी हम ते छोटी छोटी हरी हरी घास जमी दिखेणी तार दिखेणा एंच।